जहां बहुत सारा पानी लगा हुआ है।

यहां पर पतली सी पट्टी भी मारा गया है।

जहां आगे की तरफ एक प्रतिमा लगाई गई हैं।

जिस पर शर्मा ऑडियो लिखा हुआ है।

यहां आगे की तरफ एक नाव दिख रहा है।

जहां बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

सामने मुझे एक रेलवे ब्रिज दिखाई दे रहा हैं।

पीले प्लास्टिक के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं।